गराज है जहां पे एक आदमी एक कार को ठीक कर रहे हैं। वो कार को ऊपर से शिकर से बांधा हुआ है जोकि ब्लैक कलर की है और वह आदमी कुछ तो कर रहा है उसके सामने का पूरा पार्ट ही खुला हुआ है।

सबने माथे पे अपनी वाइट कलर की टोपिया पहनी हुई हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और एक घड़ी भी लगाई हुई है।

गेट है और गेट के निचे बहुत ही बड़ी कारपेट बिछी हुई है जो की तीन लेयर में बिछी हुई है पहले में भी वही रेड है और थोड़ी सी जगह पे वाइट है और फिर रेड है और फिर वाइट है।

यहाँ पे बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और यहाँ पे जो है एक दो चेयर रखी है वो वाइट कलर की है और बहुत ही ज्यादा सुन्दर से बनी हुई है और यहाँ पे एक बौटल रखी हुई है और यहाँ पे कोई इन्सान नजर नहीं आ रहे।

यहाँं पे निचे चीज़े परी हुई हैं जोकि इसको खोलने में मदद करेगी और यह जो है यह पूरा ही वाइट कलर की है अच्छी लग रही है दे --

मारो है जहाँ पे बाहर सब से सामने गेट पे दूल्हा और दुल्हन की तस्वीरें लगी हुई है। दोनो एक दूसरे को देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही सुन्दर स्टेज बनाया गया है और सामने का जो डेकोरेशन है। वह भी बहुत ज्यादा सुन्दर की गयी है।

नीचे बहुत ज्यादा टब में फ्लॉवर की वासेस रखी हुई हैं और वो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आस- पास कोई नजर नही आ रहा है।